यह फोटो एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप की है।

जहां पर किसी अलग भाषा में बोर्ड लगा हुआ है।

जोकि सेक्टर सैंतीस बी में है।

यह फोटो किसी स्टेडियम की लग रही है।

और नदी सी भी बनी हुई है पानी है।